टेंट हाउस मे टेंट के पर्दे सूखने के लिए डले हुए हैं और बहोत सारा सामान भी यहाँ बाहर रखा दिखाई दे रहा है। उस --

यहाँ एक चक्र दिखाई दे रहा है जोकि पीछे में एक चबूतरे पर बना हुआ है। उस मैदान के आस-पास हरियाली है और कुछ जमीन सूखी हुई है। उस --

यह सामने छोटे-से बच्चे की खिलौने वाली कार खड़ी हुई है जो नीले और काले रंग की है जो बोहोत ही सुन्दर दिखाई दे रही है।